सामने एक टूटा फुटा गाड़ी खड़ा हुआ है।

यहीं पर कुछ आदमी लोग खड़े हुए हैं एक मैदान दिख रहा है बड़ा सा--

पेड़ दिख रहा है सामने बहोत बड़ा फील्ड खुला मैदान दिख रहा है।

ये गार्डन जैसी दिख रहा है हरे भरे पेड़ पौधा से सजाया गया है।

धूप कर रहें हैं एक दुकान दिख रहा हैं चाय नाश्ते का।

ये एक पेट्रोल पंप दिख रहा है जिसमें लोग पेट्रोल भरने का दिखा रहे हैं।

चारों तरफ नारियल का पेड़ है हरे भरे से भरा हुआ है एक बहोत ही बड़ा मैदान है जिसमें--

पेड़ पौधा है और बहोत लोग खेल रहे हैं।

सामने पेड़ पौधा दिख रहा है कार के पीछे एक रोड गया है।

यहीं पर सब पंद्रह रुपया हर एक माल दिख रहा है।

फिटनेस का समान दिख रहा है अपनी फिटनेस बनाने के लिए--

राइट साइड में नारियल का पेड़ दिख रहा है हरे भरे से भरा हुआ है।

इसमें बहोत ही सुंदर से बना हुआ है लकड़ी में--

ये बहोत ही अच्छा दिख रहा है कुछ डब्बलों में कुछ सामान लोग हैं।

और पीछे के एक ट्रक खड़ा हुआ है एक आदमी--

ये एक रेफ्रिजरेटर है बेसिंग है जिसमें बहोत ही अच्छा है रेफ्रिजरेटर लगा हुआ हैं।